गाड़ी का नंबर पी_बी जीरो थ्री ए_वाई फाइव वन जीरो फ़ोर है।

यहां पर एक मार्केट दिखाई दे रही है।

एक आदमी खड़ा है जिसने ग्रीन जैकेट और कैप पहनी है।

यहां पर एक गुफा दिखाई दे रही है।

रूम मे टेबल लगे हुए है टेबल के ऊपर--

और एक आदमी खड़ा है यह शॉप --

शॉप के अंदर एक बाइक खड़ी है और बाहर की तरफ पेंट रखा हुआ है।

जो की पोस्ट ऑफिस है जिसके बाहर--

और यहां दूर-दूर तक बहुत बड़ी-बड़ी बिल्डिंगे --

ग्राउंड में बहुत सारे पेड़ और घास--

साइडों में नेट लगी हुई है।

दे रहा है जो भूरे रंग का है।